इसके पाम ट्रीज यहाँ पे देख सकते है। ये पाम के ट्रीज हैं।

फिर एक स्लोप आया है। फिर एक और गयी दूसरी तीसरी चौथी चौथी पाच्मी छठी ऐसा करते-करते फिर एक स्लोप आया। फिर गयी फिर एक स्लोप आया।